यह एक बहुत सुंदर सा फिगर दिखाया गया है यह फिगर राधा-कृष्णा का मूर्ति का है।

यहाँ पे बाल दाढ़ी शेप किया जाता है जो कि यहाँ कम पैसे में अच्छा बाल दाढ़ी शेप कर दिया जाता है इसी लिए लोग यहाँ दूर-दूर से बाल दाढ़ी शेप करने आते है ।

कृषि विज्ञान केन्द्र गया दिखाया गया है जो की दिखने में काफी सुंदर और अच्छा है यहाँ पे साइड में फूल का बगान पेड़-पौधे लगे हुए है और --

यह झड़ी में कुछ एक पलास्टर का बना है। जोकी दिखने में बहुत मस्त और बोहोत अच्छा है। और अलग-बगल में जंगल झड़ी है। जोकी जंगल झड़ी में बहुत--